यह एक किसी स्टेशनरी की तस्वीर है जहाँ पर चार चार तस्वीरों में मालाएँ चढ़ाई गई हैं और यहाँ गणेशसरस्वती --

--हुई है यहाँ पर एक साईकल खड़ी है और पीछे एक पोस्टर लगा है और किराना दुकान है।

यह बैंक ऑफ़ बड़ोदा की तस्वीर है जहाँ पर ऊपर पोस्टर लगा हुआ है जो पीले रंग का है यहाँ एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जो ऑरेंज रंग का है दो महिलायें शटर के सामने खड़ी हुई है उसके ऊपर पोस्टर लगी हुई है।

यह एक मस्जिद की तस्वीर है जहाँ पर दो बड़े-बड़े मीनार और ऊपर से पूल नज़र आ रहा है ।

पानी नज़र आ रही है यहाँ घास और कीचड़ नज़र आ रहा है।